यहाँ एक खुला रोड दिख रहा है जिसपे कुछ आदमी उम्म वॉक कर रहे हैं |

हरा दिख रहे है इस तालाब के किनारे बहुत सारे पेड़ लगाए गये है जो बहुत तिनपन्ने दिख रहे है और यहाँ पर एक टॉवर भी दिख रहे है ।